सूरज की किरणें भी है और जो पंछी अलग प्रकार की जो पंछी है उसका पैर भी बहुत अलग तरह का है।

ये किसी मार्केट का फोटो लग रहा है जहाँ सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है एस_बी_आई का और सामने एक आदमी साइकिल से आ रहा है।

यहाँ पर बहुत सारे खिलौने दिखाई दे रहे हैं जिसमें सबसे पहले छोटा-छोटा ड्रोन है उसके बाद हेलीकॉप्टर है उसके बाद एक नन्ही सी गुड़िया है।

यहां पे स्टेट बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है जहां पे बहोत सारे लोग अपने पैसे को निकालने आए हैं कुछ औरते बाहर अपने आप में बात कर रही है कुछ--

और अंदर भी शायद कोई है जो ए_टी_एम से अपने पैसे निकाल रहे हैं।

और जिस जो बंदा अपना तस्वीर खिंचवाया है वो एक चश्मा पहना हुआ है एक टोपी है और उधर की तरफ देख रहा है।

और ट्रैक्टर का जो पीछे का जो भाग होता है वो भी अलग-अलग प्रकार की यहाँ पे रखी हुई है पीछे हरियाली भी छाई हुई है।

ये किसी रेस्टोरेंट का फोटो दिख रहा है जहाँ पर बहुत सारे कोल्ड्रिंक्स रखे हुए हैं ऊपर और नीचे फ्रिज में भी और बगल में एक टेबल भी है जिस परे बहुत सारे ग्लास रखे हुए हैं।

अलग-अलग प्रकार की वहाँ पे दराजे दिख रही है सामने यहाँ पे एक आईना भी दिख रहा है और नीचे बहुत सारे अलग-अलग प्रकार की चीजें रखी हुई हैं।

एक किसी पार्क का फोटो दिखाई दे रहा है जहाँ पे बच्चे बहुत ही अच्छे से खेल रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा सा स्टैचू है जहाँ पर अभी एक बच्चा चढ़ा हुआ है।

बहुत सारे अलग प्रकार के लोग भी हैं और पीछे हरियाली छाई हुई है और पार्क में बहुत अच्छे से सजावटी की गई है।

ये शायद टॉयलेट शॉप का शॉप है सामने दो चेयर भी है और इधर साइड में आरएसके रैक लिखा हुआ है।

आर्टिफिशियल ग्रास रखा हुआ है और सामने गेट भी है।

और पीछे बहुत सारी हरियाली दिख रही है और सनलाइट भी है।

ये किसी घर का फोटो लग रहा है जहाँ पे अलग-अलग प्रकार की फर्नीचर रखे हुए हैं बहुत सारे चेयर टेबल और सामने बड़ा सा एक--

और सामने एक कोयल भी जल रहा है उधर उधर की तरफ गैस भी रखा हुआ है एक--

और साइड में बहुत सारे लोग भी खड़े हुए हैं पीछे हरियाली भी है सूरज की किरने भी सीधे पड़ रही है साइड में एक पानी बहोत सारा लगा हुआ है।

कुछ पुरुष भी है जो की सबसे ऊपर खड़े हुए हैं साइड में एक गेट भी है शायद ओ उसी का एंट्रेंस है बैंक का।

ये किसी रेलवे स्टेशन का फोटो है जहाँ जो कि प्लेटफार्म नंबर टू से लिया गया है यहाँ से सामने बहुत बड़ा एक इंडियन फ्लैग लहर रहा है।

पेड़ दिखाई दे रहा है उधर साइड भी बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

और हर जगह केवल साड़ी शोरूम साड़ी शोरूम सहेली साड़ी शोरूम ऐसे तरह के लिखे गए हैं बहुत सारे पोस्टर में तस्वीरें भी हैं।

ये किसी कोचिंग का फोटो लग रहा है जहाँ पे बहुत सारे सजावट हुई है शायद से पाँच सितंबर के लिए ये सब है सामने बहुत सारे बलून है।

ये किसी पार्क का फोटो है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं साइड में बहुत सारे बच्चे भी अब खेल रहे हैं मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं।

ये शायद एक कोचिंग सेंटर का फोटो है जहां पे बहोत से बच्चे और कुछ बड़े बड़े लोग भी बैठे हुए हैं पर शायद से वो पढ़ रहे हैं।